बनाया गया है चारों तरफ ईंट पत्थरों की छोटी-छोटी दीवारें हैं और उन दीवारों पे छोटी-छोटी घास भी उग गई हैं।

ये रेलवे रेल की पटरी बहुत चौड़े जगह मे बनी हुई है।

स्कूल के सारे रूमो की खिड़कियां बहुत सुंदर है इस स्कूल के फील्ड में सारे बच्चे बाहर निकले हुए हैं इस फील्ड में कुछ छोटे छोटे ग्रास और कुछ बड़े बड़े वृक्ष भी हैं।

और उनके ब्लैकबोर्ड पे लिखा है वेलकम टू पी.टी.एम. ।

इस फोटो मे कुछ म्यूजिक इन्स्ट्रमन्ट बजाए जा रहे हैं। जिसमे एक व्यक्ति तबला बजा रहा है और दूसरा व्यक्ति हारमोनियम और कुछ दर्शक खड़े होकर उनके गाना --

यह फोटो एक गेट का है जहाँ पे लगाया गया है प्रवेश निषेध आम रास्ता नहीं है। इस गेट को सीकड़ से बांध के रखा गया है। इसके अंदर कुछ व्यक्ति आते जाते हुऐ दिखाई दे रहे हैं।